कुछ उद्घाटन का काम हो रहा है उस शोरुम के अंदर लिखा है होंडाई ।

किया हुआ दिख रहा है उस ऑफिस में दो टेबल --

मुझे इस चित्र मे एक मेटाडोर दिखाई दे रही है।

उस हाल में एक लड़का सेल्फी ले रहा है।

रोड से लगी हुई एक इमारत नजर आ रही है।

बहुत बड़ा ग्राउंड है उस ग्राउंड मे घास उगी हुई है।

उस दुकान के बोर्ड पर लिखा है मनीष ऑटो पार्ट्स ।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

वह इमारत लाल पत्थर से बनी हुई है उस इमारत का दरवाजा बहोत बड़ा है।

उस दुकान का शटर आधा खुला हुआ है।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

छोटे-छोटे हट बने हुए हैं उन हटो में कुछ लोग बैठे हुए है।